और यह टाइल्स नीचे में बिठ बिठाया गया है।

जो बहुत ही ज्यादा मत्वपूर्ण है।

यह दो गधे है यह गधे बहुत ही ज्यादा मुर्ख होते है।

क्योंकि गधे बहुत मेहनती होते है और इंसान भी बहुत मेहनती होते है।

ढोल बजाना एक बहुत ही अच्छा काम माना जाता हैं।